और बहुत सारा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है और मुझे पहाड़ के नीचे कुछ टेंट भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे कुछ घास भी नजर आ रहा--

और मुझे बिल्डिंग के एंट्रेंस भी दिखाई दे रहा है और मुझे सीढ़ियां भी नजर आ रहे हैं।

और मुझे ब्लैक कलर का कर्टेन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक टेबल दिखाई दे रहा है और मुझे एक स्टील जग भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे ट्यूबलाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक कुर्सी भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां सीढ़ियां भी नजर आ रहे और गच्चे भी नज़र आ रहा है।

बाकेट भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां दो पौधों दिखाई दे रहा है और उन दो पौधों के साइड पे--